गार्डन का बिच में प्लास्टिक पाइप दिखाई दे रहा है।

ये तस्वीर में एक सुंदर सा गांव दिखाई दे रहा है।

पीछे में बहोत बड़ा बड़ा माउंटेन भी दिखाई दे रहा है।

और उसके ऊपर इलेक्ट्रिक वायर भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक कार्टून भी है और एक कारपेट भी।

ये तस्वीर में एक बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है।

घर का ऊपर में श्री राजेश्वरी ब्लॉक लिंक्स भी र लिखा हुआ है।

अलमीरा को एटीन बॉक्स में सेपरेट किया गया है।

हर एक बॉक्स में अलग अलग समान रखा हुआ है।

घर का वॉल को येलो कलर से पेंट किया गया है और छत को ब्लू कलर का टीना है।

दरवाजा का साइड में एक ठो ड्राइंग भी बना के है।

खाना और मिट भी प्लेट में रख के है।

और उसका सामने में एक ठो ग्लास भी है बहोत सारा चेयर भी है यहां पे।

यहां का घास लोग जो सब कपास पत्ता भी नहीं है।

इस तस्वीर मे बहोत सारा लोहा का टुकड़ा दिखाई दे रहा है।

लोहा का अंदर में गोल गोल से चेपी बनाकर दिखाई दे रहा है।

रूम का कलर रेड और ब्राउन है।

आदमी का आधा चेहरा जो ब्लर करके दिखाई दे रहा है।

ए तस्वीर में एक लंबा घर का वॉल दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक ब्रिज भी है जो सीमेंट से बनाया हुआ है।

यहां पे एक रेड कलर का बेंच भी रखा हुआ है।

ये तस्वीर में एक बरा सा घर दिखाई दे रहा है।

ये तस्वीर में एक बड़ा सा रूम दिखाई दे रहा है।

घर का फ्लोर में टाइल्स लगा के है।

रूम का वॉल को येलो कलर से पेंट किया है।

ये घर जो इनकम्प्लीटेड वाला घर है।

घर का बाहर में कुछ गालन और सेंटेक्स भी रखा हुआ है।

वॉल में जीसस क्राइस का क्रॉस भी बना के है और मदर मेरी का स्टैचू भी।

यहां पे एक नदी भी बह रहा है।

दूर में बहोत सारा माउंटेन और बादल भी दिखाई दे रहा है।

ये तस्वीर में कुछ घर दिखाई दे रहा है।

जिसके ऊपर ग्रीन कलर का एच_डी_एफ_सी बैंक भी लिखा हुआ है।

घर के ऊपर में रोड भी है।

ब्लैक कलर का एक ठो गाड़ी दिखाई दे रहा है।

उनका बाहर में दो ठो थी बस दिखाई दे रहा है।